बाहर के दरवाजे नीले रंग के हैं।

एक लड़के ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

चित्र मेक आइसक्रीम पार्लर का हैं।

इमारत के बाहर बहुत सारे लोग--

मस्जिद पे बहुत सारी --

सफेद रंग से पुती हुई है।

पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

वेफर्स के पैकेट दिख रहे हैं।

दीवार लाल रंग की पुती हुई है।

दो सफेद रंग के जालियां लगी हुई हैं।

एक स्टूल रखा हुआ है एक बोरी दिख रही है।

इमारत में सफेद रंग के --

पीछे तो ऐक्टिवा खड़ी हुई हैं।

बहुत सारी घास दिख रही है।